टाइगर है और इसकी सर्विसिंग के लिए यह कार खड़ी हुई है।

पेट्रोल पंप पर ब्लू कलर की लाइट लगी हुई है।

यह एक होटल सूरज जय पैलेस है जिसकी भव्य डेकोरेशन है जिसका जिसका लाइटिंग बहुत अच्छा लग रहा है।

आउट आउटडोर का जो व्यू है वह बहुत अच्छा लग रहा है।

पंप लगा हुआ है जहां से पानी बह--

ये एक मुक्ति धाम की फोटो है मुक्ति धाम के सामने एक वृक्ष लगा हुआ है।

ये एक मिल्क स्टोर है जहां पर--

यहाँ पर ग्रीन कलर की खिड़कियां हैं रेड कलर की--

चारों तरफ नाव है और लोग खड़े हुए हैं।

यह कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है जिसमें मजदूर काम कर रहे हैं।

और दीवालें कुछ-कुछ बन चुकी हैं।